यह सोने चांदी की दुकान हैं इस दुकान मैं अलग अलग प्रकार के आभूषण दिख रहे हैं।

बच्चे अच्छे तरीक़े से खेल खेल रहे कोई फील्डिंग कर रहा हैं एक बॉय बैटिंग कर रहा हैं।

शादी का कार्यक्रम हैं गेट काफी सुन्दर सजा हुआ हैं सामने।

तीन दीवालें बन चुकी हैं दूसरी दीवाल आधी है जिसे पूरा करने के लिए दो मजदूर लगे हुए हैं।

टेबल रखा हुआ है टेबल को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है यह घर काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

अलग अलग पत्तियों से यहाँ पे सजाया गया है हाल बहुत ही सुंदर है।

इस दुकान में जो दबाइयां रखी हुई हैं वह खेतों के लिए बहुत उपयोगी है यहाँ पे।